और यहाँ पे पीछे अच्छी काफी सुंदर भी डेकोरेशन भी है और ये लड़की रेड कलर की भी साड़ी पहने हुए है।

पीछे और ये लड़की देखने में भी बहुत-ही सुंदर भी दिख रही है और इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन --

स चित्र में दिखाया जा रहा है और ये ईसाई लोगों का मंदिर है और भी काफी लोगों की भी भीड़ है और ये देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर है और यहां पे काफी लोग भी हैं।

और यहाँं पे हर चीज के भी पौधे बिक रहे हैं और यहाँं पे एक कुर्सी भी रखी हुई है।

कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है और ये एक नाऊ की दुकान है और यहां पे एक लड़का भी बाल कट्टिंग करवा रहा है।

इस चित्र में दिखाया जा रहा है | यह एक जिम की फोटो है।